बहुत सारी टैक्सियां यहां खड़ी रहती है आदमी --

लड़के ने सफेद रंग के शर्ट और ब्लू कलर के जींस --

उनके पास खड़े होकर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं।

चारों तरफ एल_ई_डी लाइट्स लगाई गई है और दीवार को --

रखी हुई दिखाई गई है।

बहुत ही खुल्ला और बड़ा है यहां चारों तरफ मिट्टी दिखाई दे रही है।

है इसमें फोटोकॉपी और लेमिनेशन होता है।

बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपना काम कराने के लिए यहां आए हुए हैं।